और उसके हाथ पर एक किताब है।

और लोहे की समान अधिक नज़र आ रहे है कुछ पाइपे नज़र आ रहे है।